अं सड़क पे कपड़े रखे हुए हैं। अपनी पसंद से कपड़े छाट के वहाँ देख भी सकते हैं। क्वालिटी देख सकते हैं। बहुत अच्छी हैं

अंदर लोग बैठे हुए हैं। टोपी लगाई है। इसके लिए अंदाजा कर है कि लोग हैं। नीचे फर्श है। जो बिछा है कितना अच्छा लग रहा है। नीचे लोग बैठे हुए हैं।